इस इमेज में कॉस्मेटिक शॉप दिख रहा है। कॉस्मेटिक शॉप में जो सेलर है --

एक छोटा सा बच्चा भी यहाँ पे इन लोगो के साथ में और शॉपकीपर इन लोगों को सामान दे रहा है।